जहां पर कई सारे लोग आए हुए हैं।

यहां पर पानी भी उपलब्ध है और शौचालय भी यहां है।

और ये रायपुर में है और यहां पर एक्सरसाइज करने के लिए काफी सारा मशीन रखा हुआ है।

और आस पास काफी सारे पेड़ पौधा लगा हुआ है और पानी की सुविधा भी यहां पर है।

मैं देख पा रही हूं ये एक मंदिर है।

और काफी बड़ा बड़ा यहां पर पेड़ पौधा लगा हुआ है।

यहां पर काफी सारा घर भी है।

काफी बड़ा बड़ा यहां पर पत्थर रखा हुआ है।

और काफी लोग यहां पर घूमने आते हैं।

जहां पर बहुत सारी मछलियां है।

मैं देख पा रही हूं कि ये बड़ा सा गार्डन है।